मुझे यहां दो पुल दिख--

जोकि फूलों से सजा हुआ है यहां पर--

यहां पर मुझे एक गेराज दिख रहा है।

साथ ही यहां पर दो वर्कर काम कर रहे हैं।

चाय की दुकान दिख रही है।

यहां पर मुझे बैंक ऑफ़ बड़ौदा का बैनर दिखाई दे रहा है।

जहां पर के_जी_एन सहेज जन सेवा केंद्र--

खेत दिखाई दे रहा हैं।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

यहां पर मुझे एक फर्नीचर की दुकान दिखाई दे रही है।